और शादियों वगैरह में ये मसाज जो हैं लोग कराते हैं खूबसूरती के लिए।

जिससे उसको सफाई और पॉलिश की जाती है।

ये बहुत ही अच्छी है।